घर है घर का कलर येल्लो है बॉर्डर रेड है खिड़की का कलर ग्रे है घर के बाहर चार लेडीज है।

ब्लू है गोल्डन कलर से डिजाइन बना हुआ है।

डब्बे रखे हुए हैं दुकान के अंदर बहोत सारे--

दुकान है दुकान का कलर ब्राउन है येलो है बोर्ड ग्रे है।

एक आदमी है सर में ग्रीन कलर का गमछा बांधा हुआ है।